यहां पर बहुत सारे हलवाई लगे हुए हैं ये खाना बना रहे हैं।

यहां पर अंधेरा छाया है यहां एक बड़ी सी फैक्ट्री है और बाहर--

यहां मैकेनिक गाडी में लगा हुआ है यह गाडी को ठीक कर रहा है सामने बड़ी बड़ी दुकान हैं।

ये बहोत ही खूबसूरत है यहां की मार्बल का फर्श है बड़ा--

यहां पर एक दुकान है सामने एक आदमी बैठा है जो कुर्सी पे बैठा है।

ये दोनों आदमी आपस में बातें कर रहे हैं।

सामने बड़ी बड़ी झाड़ियां भी है हरा हरा पार्क है खुला नीला मैदान और आसमान है।

यहां पर सामने बहुत सारे पर्दे लगे हैं अलग अलग रंगों के।

यहां सामने बहुत सारे बच्चों के कपड़े हैं छोटे छोटे बच्चों के लोवर टी शर्ट और नाइट ड्रेस हैं।